लाइट भी है और कुछ लाल कलर का दरवाजा भी है।

और कांच का काउंटर भी दिख रहा है लाइट भी दिख रहा है और कुछ कार्टून वगैरा दिख रहा है निचे टाइल्स भी लगा है।

इस तस्वीर एक मंदिर का हैं जिसमे एक बड़ा सा घंटा भी दिख रहा हैं और कुछ माला वगैरा हैं और सामने एक मस्त--

ये तस्वीर एक चौक की हैं जिसमे पुतला बना हुआ हैं और एक भाला बना हुआ हैं और कुछ स्टील का कुछ ग्रिल लगा हुआ हैं।

यह तस्वीर एक चौक का हैं जीसमें घोडा भी हैं एक पुतला भी बना हुआ हैं।